ये दिख रहा है ऊपर की तरफ देखें तो एक साइकिल भी दिख रही है और --

रेड कलर का घास का मैदान --